इस चित्र को देख देखे तो बहुत सारे पेंसिल्स दिख रहे है और बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए है रंग बिरंगे पौधे भी लगे हुए है।

और एक लड़का कॉउंटर में बैठा है और दो लड़के उसके करीब खड़े है।

और लोग चल के जा रहे है।

चित्र मे एक हम गाड़ी देख सकते है जिस पर कई सारे--